और उसने एक झंडा लिया है लाल और पीला।

पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जीसपे नंबरिंग नंबर लिखें हुए हैं।

एक उधर स्कूटी खड़ी है।

एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा है जीने पे।

वहां पर नींव पड़ रही है और यहां पर तीन लोग खड़े हैं।